यहां पे बहुत सारे चेयर्स और टेबल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और एक टेबल भी नजर आ रही है।

और वहां पे दो व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में एक बैंक नजर आ रही है।

इस दृश्य में वेटिंग चेयर भी नजर आ रही है।

और दूल्हा और दुल्हन की तस्वीर भी एंट्री पॉइंट पे लगाई गई है।

यहाँ पे बहुत सी खाने पीने की और यूज की चीजें रखी हुई नजर आ रही हैं।

पानी का और वफ़ पौधों को पानी देते हुए नजर आ रही है।

और यहां बहोत से पौधे भी नजर आ--

यहां पे चेयर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और एक बनी हुई स्टेज भी दिखाई दे रही है।

और चोंगे भी बांधे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जहां पे बहोत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

और वहां की फर्श की कलर ब्लैक दिखाई दे रही है।

वो सीलिंग पे एक दो सीलिंग फैन भी नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में एक ढाबा नजर आ रहा है।

जहां पर बहोत से मार्बल और टाइल्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और इस गोडाउन की छत एल्बेस्टर की नजर आ रही है।

जहां पे एक बहती हुई नदी और नदी में एक बड़ी सी चट्टान नजर आ रही है।

जिस चट्टान के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा है।

एक वॉल क्लॉक भी लगी हुई नजर आ रही है।

इस दृश्य में एक महाकाली टाइल्स मार्वल स्टोर के बाहर का दृश्य दिखाया गया है।

इस दृश्य में एक स्टेज दिखाई दे रही है।